इकरा बाद की हरी हरी सब उजर उजर पर्दा टांगलबा।

ई एक कंक्रीट के मसाला मिलाये वाला गाडी वा जोन की तीनगो चक्का लोकत आ एगो ऊ कुर्सी लोगत।